का रंग क्रीम कलर का है और एक खड़ी है जिसका रंग काला है और दो मोटरसाइकिल पर नागरिक सवार है।

उनके लिए टोकरियां भी रखी हुई है।

और यहां पर बहोत ज्यादा पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

ओर इनमे से एक महिला ने माल्टा रंग का सूट प माल्टा और सफेद रंग का सूट पहना हुआ है ।

बाहेर एक ग्रील उ सिल्वर कलर की लखी हुई हो और सिल्वर कलर की लेक ग्रील के नीचे --

ओर इससे पेट्रोल पम्प कि छत का रंग भी सफेद देखाइ दे रहा है।

और यहां पर हर तरह की है।